ये फोटो में हम लोग को एक बड़ा जंगल दिखाई दे रहा--

ये फोटो मे हमलोग को दो ठो बस दिखाई दे रहा है दोनों ग्रीन कलर का बस है।

यहां पे दो तीन सामान रखा हुआ --

हम लोग को एक कैलेंडर भी दिखाई दे रा है।

यहां पे एक मंदिर जैसा घर बना हुआ है।

ये फोटो में हम लोग को एक मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा बल्ब लगा हुआ है और वेटिंग का मशीन भी है।